इसमे नीचे दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लैक दिखाई दे रहा हैं नीला कलर दिखाई दे रहा है

दिखाई दे रहा है इसमें दो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें इसमें हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसपे रोड दिखाई दे रहा है| छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे --

ऑटो दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की इस पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस में एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा बस का कलर व्हाइट दिखाई दे --